कांटे वाले चमच भी रखे है और चमच की डंडियों में बहुत सी डिजाईन बनाई गई है।

दरी के ऊपर एक औरत और हाथ में फुटबॉल लेके और उ--

अभी उसमें कोई भी प्लास्टर या फ़िर पेंट नहीं हुआ है सामने एक टेंट भी लगा हैं।

बोर्ड नीले रंग का है और उसके ऊपर सफ़ेद रंग से फ़ेडरल बैंक ए.टी.एम लिखा हैं।

जैसा की में देख रही हूँ की यहाँ पे एक टीन शेड के ऊपर अल्ट्राटेक लिखा हुआ है।

झुला लगाया गया है। झूला में फिसलपट्टी लगाई गई है और फिस्सलपट्टी पीले रंग की लगाई गई है।